यहां पर लड़की और लड़के वर से कन्यादान कर रहे हैं।

जिसमें दूल्हा खड़ा है और लड़की बैठी हुई है।

एक बुजुर्ग आदमी अपने कंधे पे थैला टांगे पड़ा है।

और एक आदमी ने अपने गले में साफा डाल रखा हुआ है और एक बराबर साइड में पेड़ खड़ा हुआ --

यह एक माता का जागरण हो रहा है जिसमें पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे है।

और जरा सी काली कलर की लाइट हुई दिखाई दे रही है और कुछ महिलाएं पूजन कर रही है।

यह एक झरना है जिसमें पानी बहा रहा है यह ऊपर पहाड़ों से आ रहा है।

और एक बिल्डिंग बिल्डिंग है जिसपे पीले कलर का रंग हो रखा है।

बराबर साइड में दो स्टूल रखे हैं जिनके ऊपर छतरी रखी है और माला घेर रखी है उनपे।

बिल्डिंग में लाल कलर की पोताई हो रखी है और सफेद कलर की।

पीछे एक दीवार है दीवार पर एक डोरी टंग रही है।

वॉलीबॉल भी खेले जा रहे हैं और वॉलीबॉल भी खेले जा रहे हैं और मैदान के बीच में--

इसमें व्यक्ति खाना खा रहे हैं बैठ के मेज पे।